यह एक झूले का चित्र है।

यहां पर झूलों में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं झूलों का रंग रंग बिरंगा है।

यहां पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है तथा--

यहां पर एक पोस्टर लगा है जिसमें एक किसान गेहूं की फसल के साथ खड़ा हुआ है यहां पर श्री गणेश ट्रेडिंग लिखा हुआ है।

यहां पर लाइट लगी हुई है तथा नीचे ग्राउंड पर इंटरलॉक वाली ईंटे बिछी हुई हैं पेट्रोल पंप का रंग नीला है।

मेज पर कुछ कप रखे हुए हैं जिनके अंदर पेन है।

एक व्यक्ति ने लाल रंग की टोपी पेहनी हुए है।

यह दृश्य एक अस्पताल का है जो विशेष रूप से बच्चो के लिए है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

एक व्यक्ति हाथ में कुछ पकड़े खड़ा हुआ है।

पानी से दिखाई दे रही है।

सामने की दीवार रंगहीन है।

इसमें पांच बटन है इसका रंग सफेद लाल और नीला है।

यह दृश्य एक घर का है जहां पर कुछ सोफे और मेज रखी हुई है यहां पर पर्दे टंगे हुए हैं तथा बराबर में एक किवाड़ दिखाई दे रहा है।

नीचे सफेद रंग का फर्श है।

दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा है।

शीशे में कुछ व्यक्ति डंबल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो घर है घर के अंदर कुछ पेड़ भी है।

गेट का कलर है नीला और सफेद।

और गेट के बराबर में दो ठो ठमले है। ठमले के ऊपर कुछ लाइट लग रही है दो।

एक घर बराबर में भी है उसके ऊपर एक लाइट लग रही है।

घर के बराबर में ही एक ग्राउंड सा उसपे हरे कलर का घास बिछ रहा है।

यहां पर कुछ व्यक्ति योगा अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ऊपर अंसारी टिंबर्स लिखा हुआ है।

कुछ व्यक्ति पीले तथा सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए है।

पीछे लाल रंग की दीवार हो रही है।

छत का बेस तैयार किया गया है।

दीवार पर एक पत्र लगा है जो शायद किसी डिग्री को दर्शाता है दीवार का रंग हल्का हरा व सफेद है।

यहां पर कुछ औजार जैसे प्लास रखे हुए हैं।